और बाहर एक बोर्ड है बोर्ड पर लिखा हुआ है कंटिन्यू --

ये एक शोरूम है शोरूम के बाहर कूलर रखे हुए है छोटे भी है कूलर बड़े भी है।

मिक्सिंग मशीन भी रखी हुई है और ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है।

एक बोरा मैंने ऊपर क्रेन पर टांग रखा है।

बिल्डिंग पर बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है सहारनपुर।

ये एक योगा है योगा बच्चों को सिखाई जा रही है।

ये एक बहुत बड़ा हाल है जिसके अंदर एक्सरसाइज और जिम की मशीने रखी हुई है।

और एक शीशे का गेट भी लगा हुआ हैं जिसमे लाइट भी लग रही है।

और इसके नीचे एक थमला है थमले पर टाइलें लगी हुई है।

गेट के ठीक सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है।

ये एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में एक टेबल रखी हुई टेबल के पास कुर्सीयां और भी रखी हुई है।

एक बाइक खड़ी है और एक साइकिल खड़ी हुई है।